एक गार्डन के बाहर का या रोड साइड वाला अ एरिया है।

आजू बाजू अ जो बॉर्डर की हुई है वह झाड़ू की है ग्रास भी है।

दिया लगा हुआ है जो जला हुआ है जो जल जल रही है उसमें--

ये एक फोटो लगी है फोटो में एक मां दिखाई है हाथ में एक इंसान है।

एक साइड में शॉर्ट्स लगे हुए हैं पैंट्स लगे हुए हैं।

रोड है रोड के साइड एक खंभा लगा है सामने थोड़ा पानी है।